इस तस्बीर में मुझे दुर्गा माँ का पंडाल दिखाई दे रहा है। जहाँ पर दुर्गा जी सर अ दुर्गा जी हनुमान जी शिव जी --

आ इस मिट्टी पर कर अम कुछ मजदूर हैं जहाँ पर काम करते हुए दिख रहे हैं।

और इन्होंने खूब अच्छी तरह से रंगोली यहाँ पर बनाई हुई य रखी है।

अ यहाँ पर एक पंडाल लगा हुआ है जहाँ पर लोगो की भीड़ एकत्रित हुई है।

इस तस्वीर में मुझे एक रिसेप्शन की जगह दिखाई दे रही है जहाॅं पर बहोत अच्छी तरह एक स्टेज को सजाया गया है डेकोरेट किया गया है।

इस तस्वीर में मुझे सब्ज़ी मंडी का बजार दिख रहा है।